जिसमे मुझे एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे एक होटल दिखाई दे रहा है।

जिसमे मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है।

फुग्गे भी दिखाई दे रहे है।

और मुझे बहोत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर मुझे मकान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे एक नगर पंचायत दिखाई दे रही है।

बिजली का खंभा भी दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर सुखी घाँस भी दिखाई--

और पर्दे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर मुझे रोड भी दिखाई दे रही है।

मुझे ईंटें भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुझे बर्फ भी दिखाई दे रहे है।

यह एक डांस अकैडमी है यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे डांस करते हुए दिख--

यहाँ पर मुझ पेड़ भी दिखाई दे रहे है और यहाँ पर मुझे बादल भी दिखाई दे रहा है।

सड़क भी दिखाई दे रही है और मुझे यहाँ पर एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर मुझे एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ए. सी. भी लगा हुआ है।

और यहाँ पर मुझे एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ए. सी. भी लगा हुआ है।

यहाँ पर मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहे है।